और उसके अलावा यहाँ पे पेशेंट भी आ करके अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे जोकि बैक पेन या गर्दन या सर में दर्द उसकी दवाई आपको देंगे।

ये एक स्कूल दिख रहा है जहां पे बच्चे राखी काम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो बच्चे बाहर बैठ के राखी बना रहे हैं। कुछ लोग ने राखी फ्लोर पर रखी हुई है वो चीज आप देख सकते हो और कुछ लोग --

अभी उसको बना रहे हैं अ अच्छे से और टीचर खड़ी हो के यहां पे चेक कर रही हैं बच्चे कैसे काम कर रहें हैं।